किनार पर दो बोट रखी है जिनका रंग सफ़ेद है वहाँ पर छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। पीछे एक पहाड़ भी दिख रहा है जिसका रंग हरा है। ऊपर एक असमान भी है जिसका रंग नीला है।

जहाँ पर एक बड़ा सा पहाड़ है पहाड़ पर हरे हरे रंग के पेड़ हैं पहाड़ पर एक तारों के ऊपर--

ऊपर झूला बना हुआ है जिसमें लाल कलर की डलिया तंगी हुई है और एक लोहे का खम्भा भी दिख रहा है।

यहाँ पर एक बहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही है जिसके पानी का रंग नीला है।

एक भी दिखाई दे रही है जिसका रंग हल्का-सा काला है ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है जिसका रंग नीला और सफेद है और सारा पे--

ने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं इमारत पर बहोत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ है उनका रंग सफेद है।

सफ़ेद रंग की शर्ट और नील का पैंट पहना हुआ है।

नीचे बड़ा सा एक मकान भी है जो लाल कलर का है और बड़े-बड़े पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं जो हरे और काले कलर के हैं।

यहाँ पर एक बड़ी सी इमारत है जिसका कलर सफेद है इसमें बड़ी-बड़ी खिड़कियां भी लगी हुई हैं जो लोहे की हैं।